यह एक पिक्चर दिख रही है।

ये एक फैक्टरी की पिक्चर है।

यहां एक पिक्चर दिख रही है।

यहां दो ट्रक दिख रहे हैं।

यहां एक पिक्चर दिख रही है।

यहां पर फूलों से सजावट की गई है।

यहां पर लोहे के सामान रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

यहाँ एक बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर ब्लैक पन्नी पे छोटे-छोटे पौधे रखे हुए हैं।

यहां एक पिक्चर दिख रही है।

यहां एक सांप की पिक्चर दिख रही है।

ये एक शॉप के पिक्चर है।

यहां एक लड़की प्लेट्स लगा रही है।

यहां एक औरत आइसक्रीम दे रही है।

यहां बहोत सारे लोगों की भीड़ है।

यहाँ एक बड़ा हॉल दिख रहा हैं।

यहां पर कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मूर्तियों की फोटो लगी है।

यहां एक काली चेयर रखी है।